यह भगवान गणेश का बहुत अच्छा सुंदर सा ऐट्रैटिव आकर्षक ये मूर्ति है।

और एक दरवाजा है। दरवाजा में कुछ लगा हुआ नही है काफी अन्धका आ अँधेरा वाला जगह है ये और अंदर से फोटो खींचा गया है।

और काफी सुंदर दृश्य है पीला रंग में रंगे भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा--

यह एक विद्यालय है इस विद्यालय का नाम है बचपन ये प्ले स्कूल बच्चे का खेलना का ये जगह है बच्चे लोगो को खिलाया जाता है।

भगवान बुद्ध का यह प्रतिमा ओड हुए और सुंदर सा दृश्य हम्म भगवान बुद्ध का काला रंग का यह भगवान बुद्ध के साधन में बैठे हुए यह मूर्ति स्टैचू ।

एक लम्बा तकिया एक और लम्बा तकिया और उसके बीच में छोटा सा तकिया।

काफी सुन्दर सा एक दृश्य है पलंग काफी अच्छा है साफ़ सफाई होटल